बहुत ही सुंदर लाइफ लाइन कोचिंग सेंटर है यहाँ क्लास फिफ्थ से क्लास टेन्थ तक सी.बी.एस.ई बी.एस.ई.बी. यहाँ मैथ्स इंग्लिश साइंस एंड एस.एस.टी. की तैयारी अनुमति शिक्षाओ --